चित्र मे मुझे कई सारे ट्रक खड़े हुए दिखाई--

चित्र में मुझे एक शॉप दिखाई दे रहीं हैं।

चित्र में मुझे स्टेज को झालर से डेकोरेट किया हुआ दिख रहा है।